बहुत सारे पेंट्स रखे हुए हैं।

एक ब्लैक कलर का टूल भी रखा हुआ है।

नीचे में डिस्को लाइट्स भी लगे हुए हैं।

लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

बाहर बहुत सारे बाइक्स लगे हुए हैं।

एक विद्यालय दिख रहा है जिसका कलर पिंक एवं यलो है।

एक होटल दिख रहा है जिसका कलर ब्लैक है।

नीचे बहोत सारे हरे भरे घास लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बच्चियां पेड़ पौधे लगा रहे हैं।

बहोत सारे तार पे कपड़े टंगे हुए हैं।

बाहर में एक बुलेट और दो बाइक लगे हुए हैं।